यहाँ पर एक पार्लर है। जिसका नाम ए वन एन जे बी पार्लर है।

पीछे कुछ अच्छे डिज़ाइनस बने हुए हैं।

ग्रीन कलर की दो बॉक्स रखी हुवी है। वाइट कलर की दो बॉटल्स हैं। एक लेडी है।

पर्दे लगे हुए हैं पर्पल कलर के। वाइट कलर के दीवारे हैं। ए सी है।

यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग हो रही है।